में उ बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा ग्राउंड में बहुत सारे आर्मी के लोग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे इसके चारो तरफ बहुत सा ब बड़े-बड़े रोड दिखाई दे रहे रोड पे चुना छिटा हुआ दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड के बगल में एक रोड भी दिखाई दे रहा है ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे बैठके कॉपी पे कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं।

थोड़ी दूरी पे बहुत सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है छोटे छोटे पेड़ पौधे--

एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग में बहोत बड़े बड़े हॉल दिख रहे है।

पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। यह बिल्डिंग रेड कलर का है इस बिल्डिंग के बाहर एक बड़ी सी बाउंड्री बनाई हुई है बाउंड्री में एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है।

एक जनरल स्टोर है जिसका नाम राज चावल जनरल स्टोर है। इसमें तरह तरह के किराने के सामान मिलते हैं जैसे आटा चावल--

इसमें एक बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है हॉल में बहुत बड़ा बड़े बड़े टेबुल लगे हुए हैं टेबुल के चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई है बहुत सारी--

एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग में एक बेंच लगा हुआ है बहुत सारे कुर्सी लगे हुए हैं दराज लगा हुआ है दो आदमी खड़े हैं एक शटर लगा हुआ है।

बाउंड्री है चारों तरफ बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही है बाउंड्री में अह ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ बच्चे बैठे हुए हैं ग्रा बाउंड्री में ग्रीन रंग का घास है।